पीले रंग के कपड़ों में कुछ यहां पंडित बैठे हुए दिख रहे हैं।

यहां बहोत सारे पौधे खूबसूरत फूलों से भरे हुए दिख रहे हैं।

यहां गमलों में पौधे दिखाई दे रहे हैं।